और चॉकलेट सबका डिब्बा है हाजमोला का डिब्बा है यहाँ नापने के लिए नापने वाला ये भी रखा हुआ है स्प्राइट रखा हुआ है।

यहाँ सिंघासन मेहरूँन कलर और सिल्वर कलर का है यहाँ राजा बैठते हैं या जिसका घर है वो बैठेगा।

यह कोई शॉप है। यहाँ पे बहोत सारे तरह-तरह के चीजें रखे हुए हैं। यहाँ मैगी है अगरबत्ती है बहोत सारी चीजें हैं। लोग यहाँ पर आ कर तरह-तरह के सामान खरीदते हैं। अपने जरूरत का सामान यहाँ से खरीदते हैं।

यह बहुत ही सुन्दर ढंग से रखा हुआ है।